यहां पर बहुत दूर दूर तक एक फसल दिख रही है जो कि--

प्याज गाजर अनेक तरह की सब्जियां पड़ी है और--

यहां पर एक फोटो दिखाई गई है जिस पे ऊपर नाम लिखा हुआ है मारवाड़ टी पॉइंट ।